या फिर एयरपोर्ट का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

या फिर कोई मॉल भी इसको बोला जा सकता है।

जहाँ पर एक दुकान के भीतर में।

एक पुतले को कपड़ा पहना कर रखा गया है।

और गलियारे में भी कपड़े की शोकेस है।

काफी अच्छी कंडीशन में कस करके रखा गया हैं।

माल गोदाम का यह एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

एक तरफ बैंक है और दूसरे तरफ में ए_टी_एम लगा हुआ है और बाहर में एक--

किसी वर्कशॉप एरिया के अंदर में।

जहाँ पर कपड़ों के ड्राई क्लीनिंग की जाती हैऔर एक वशिंग मशीन का भी फोटो बनाया हुआ है।

की हुई कारीगरी को यहाँ पर दिखाया गया है।

इस एरिया में काफी अच्छा टाइल्स और मार्बल की कारीगरी की हुई है।

जिसमें लाइट का भी काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है।

और इसमें बेसिन वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं जो काफी सुंदर और स्वच्छ वातावरण में है।

और भवन के ऊपर में एक महिला का फोटो लगा हुआ है ।

इलेक्शन या फिर चुनाव का माहौल चल रहा है।

और यह जो दृश्य है रात के समय का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कपड़ों का एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें दुकान के अंदर बने रैक का तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रहा है।

काफी सारी छोटी-छोटी मछलियों को लेकर--

इलेक्ट्रिक शॉप का दृश्य दिखाई दे रहा है।

तरह तरह के सामान बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसी जयमाल के कार्जकर्म के लिए यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है।

जहाँ पर --मार्केटिंग बाजार जो है--

एक मार्केट का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो तीन मंजिल का बिल्डिंग बना हुआ है उसमें सबसे ऊपर आकास--

का एक बोर्ड लगा हुआ है और नीचे में स्टेट बैंक का ए_टी_एम भी--

जिसमें दो ए_टी_एम लगे हुए हैं एक ए_टी_एम जो है खराब पड़ा है।

और एक ए_टी_एम चल रहा है बाहर में महिलाओं और पुरुषों की लंबी लाइन भी लगी हुई है पैसे निकालने के लि--

इसमें एक कतार में फूलों के गमले को रखा गया है सभी फूलों के गमले जो है--

जिसमें यह किसी देवी देवता का मूर्ति है यहां पर ऊपर मे लिखा हुआ है श्री माता अंबाग्ला मुखी शक्ति पीठ--